हमे यहाँ पर छत दिखाई दे रही है हमे यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहे है मिट्टी दिखाई दे रही है और ला और आसमान दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पर बहुत सारे अं रोड दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है।

हमे यहा पर फूल पत्तिया दिक रह है। हमे यहा पर पर्दे दिख रहे है। जो की पिंक कलर के व्हाइट कलर के है। हमे यहा पर बहुत सारी काँच दिख रही है। जो ब्लू कलर की--